और नीचे सामान डला हुआ है और उसमें वो एक पीछे से कुछ लोग आये है जो की बीच में एक में कुछ --

पेड़ पत्तियाँ लागी हुई है। नीचे एक लाल कलर की एक सफेद कलर की एक कुर्सियां राखी हुई है। बछे एक साइड से एक लोग आ रहे है।

एक लोहे की बड़ी सी जाली हैं उसमें नीचे कुछ अ नीचे कुछ सायद से कुछ कबूतर रखे हुए हैं नीचे रेत रेत डला हुआ हैं।

पीछे से कुछ लोग खड़े हुए हैं सामने एक दीवार है क्रीम कलर की उसके आगे एक येलो कलर की गाउन में एक लड़की है पीछे नीचे डोली --

नीचे कुछ पत्थर डले हुए है साइड से कुछ सड़क बनी हुई --

सामने एक हॉल है जिसमें फर्नीचर लगा हुआ है कथई कलर का और एक अ एक चारो तरफ से कुर्सीया रखी हुई है।

और ब्लू कलर की उसके आगे कुछ मोटरसाइकिल रखी हुई है।

एक पेटी रखी हुई है कुछ सामान रखा हुआ है और नीचे कुछ गमले रखे हुए हैं।

बड़ा से इक लैटर लगी हुई है बगल में इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।